नदी मे बहुत ज्यादा पानी है नदी का पानी बहुत ही ज्यादा साफ है नदी में तरह-तरह की मछली भी रेहते है जिससे मछुवारे लोग पकड़ने के लिए जाते है और यहाँ पे बहुत सारे लोग घुमने के लिए जाते है ।--

वह बैंक बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि उससे तुरंत ही फोनपे गूगल पे बन जाता है उसमें ए.टी.एम. का भी सुविधा दिया जाता है उस बैंक --

फिर उससे गाछ निकलते हैं फिर उसको एक-दो महिना बाद फोड़ा जाता है तब जाके आलू बनते हैं आलू बहुत ही --

इस महजिद में बहुत सारे लोग जाते हैं मुस्लिम धर्म के लोग नमाज़ अदा करने के लिये जुम्मा पढ़ने के लिये यहाँ पे हर शुक्रवार को नमाज़ अदा किया जाता है जुम्मा पढ़ा जाता है यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम धर्म के लोग जाते हैं।

कोई भी ऐसा बुक नहीं होगा जो यहाँ पे नहीं रहता है हर प्रकार के बुक रहते हैं हमे यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं किताब लेके पढने के लिए।